और बहुत सारे आदमी जलेबी ले रहे हैं।

और फोटो ओटो खीच रहे हैं कोई लड़का साईड में खड़ा होते हैं | आदमी --

अ बाइक लेकर आए हैं कोई कोई इहाँ पर दू कलर का चार चक्का है एक ब्लैक है एक वाइट है।

यहां पे एक बहुत बड़ा घर हैं।

कोई खड़ा हो के है कोई झुक के है खूबसूरत लगते है।